और यह कार्यालय आयुक्त का कार्यालय है और यह पटना में स्थित है।

और कॉफी पीने के बाद हमारी नींद भी गायब हो जाती है और हमें एक अलग ही लेवल का एनर्जी मिलता है।

यहाँ पर चिकन मसाला भी है मीट मसाला भी है और मैगी मैगी भी है और बहुत कुछ खाने की चीजें जो कि पैकेज्ड रूप में है। यहाँ पर वो सब मौजूद है ।

और अभी तुरंत एक बस आई है और यह बस स्टैण्ड बिल्कुल ही सुन-सान लग रहा है यहाँ पर सिर्फ एक बस दिखाई दे रहा है।

यह मजदूर बहुत मेहनत से काम कर रहे है और ये अभी छत ये अभी घर का फाउंडेशन कर रहे है और यह अभी कुछ दिन ये काम कर रहे है और यहाँ पर काम अभी शरू ही हुआ है।

यह तालाब अभी बहुत भरा हुआ है । यह बरसात का वक़्त है इसलिए यह तालाब काफ़ी भरा हुआ है और यह बहुत गहरा भी है ।